ये शादी का मंच है यहाँ शादी होती है और दुल्ला दुल्हन बैठते हैं हम फोटो खींचते हैं सेल्फी भी खींचते हैं इस पे सब अच्छा होता है।

ये मैट मुझे दिख रही है यहाँ पे है जब हम मैट बिछाते हैं कि बाहर से आते हैं जब गीले कपड़े या गीले पाँव आते हैं तो उसको बिठाते हैं हम उसपे सारा धूल-धाल लगता है इस मेट मेट बहोत सुरक्षित है कमरे के लिए।